अधिक सो मे सो बच्चो की किताबे भी है बड़ो की किताबे भी है।

सामने की तरफ मिरर लगे हुई है इसमे बहुत सारी स्प्रे बॉटल रखी हुई है सामने बारकोड रखा हुआ है फेशियल किट राखी हुई है पीछे की तरफ शेम्पू के बॉटल रखी हुई है कैचियाँ रखी हुई है।

सामने के तरफ एक बड़ासा चर्च नज़र आ रहा है जहा पर मेरीज रिसिप्शन चल --

ये एक बस स्टेशन है। सामने कि तरफ ये रेड बसे दिख रही है। ये बड़ा सा ग्राउंड है इनमे रेड बसेस नजर आ रही है। सामने की तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे है। सामने कई मंज़िला इमारते है।

सामने की तरफ एक बड़ा सा चर्च नजर आ रहा है उसके बीचो बीच एक सड़क बनी हुई है इसमें चरो तरफ बेंचे रखी हुई है बेंचों के साइड मे फ्लावर्स की मालाएँ भी रखी हुई--